और बहुत सारे मशीनें दिखाई दे रही है जो वाइट कलर की है।

यहां पर मुझे बहुत सारे आदमी लोग दिखाई दे रहे हैं जो बैठे हुए हैं और एक आदमी दिखाई दे रहा है।

में बहुत सारे कार खड़े हैं और कुछ लाइन से खड़े हैं जो वाइट कलर के हैं और ग्रे कलर के हैं और ब्लैक कलर के हैं।

और कुछ बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के हैं और थोड़े ग्रे कलर के हैं।

ये जिन्होंने टोपी पहना हुआ है और हाथ में एक डमरू है और एक तबला है और एक गिटार है।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

यहां पर मुझे एक बड़ा सा पंडाल दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर मुझे एक ईटे का छोटा सा बना हुआ घर दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का है और वाइट कलर का है।

और उसके ऊपर कुछ कांच के गिलास दिखाई दे रहे है जो उल्टे करके रखे गए है।